ए.टी.एम बोर्ड लागल बा और आदमी पीछे पैसे निकारत ओम लाइट लागल बा खिड़की बा उजर कलर के।

हई नीला कलर के चट्टी लागल बा। हई परछाई छपल बा।

और पीछहूँ काम चलता अ टोपी पहिन के पीअर के काम करथव कुलीन और उजर कलर के शर्ट --